इन संस्था मे आकर के बच्चे अपने ज्ञान मे सुधार करते है।

पहाड़ तो वाकई काफी खुबसूरत होते हैं परन्तु इन पहाड़ो पे जो छोटी-छोटी घासें उग आती हैं। इनकी सुंदरता में --

इसी का एक अभिन्न हिस्सा है डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल इन्जीनिरिंग टेक्नोलोजी |